खिड़कहिया तो और ज्यादा दिख रहा हैंचार मंजिल का हैंइधर गाड़िया भी खड़े और लोग भी हैं ।

इधर बहुत आदमी दिख रहे हैं और वहाँ से देख रहा हैं इधर भी इधर भी देखो सजावट भी मस्त हैं।

यहा बिस्किट बाट रहे भैया बोहोत का काम अच्छा होगा इसलिए खुशी मे इधर भैया बेठे है इधर बच्चे लोग भी बोहोत खुश दिख रहे है। देखो तो दो लोग और है इधर खुरचिया भी बोहोत है बिस्कुट भी --

इधर तार भी घीरा हैं सादा कलर का टोपी पहना है इधर देखो तो वो कैसा कर रहा है।